यहा पर एक कार है और एक मैजिक है दोनों सफ़ेद कलर की है और यहा पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है जो की हरे कलर के है और यहाँ पर ज्यादा हरियाली नहीं है।

यहाँ पर हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की व्हाइट कलर की है और ऐसे पिंक कलर की दिवारे पूत रही है और इसमे बहुत सारी विंडो है।

यहाँ पर बहुत बडा हराभरा मैदान है और एक सफेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है इधर पिंक कलर भी लगा हुआ है।

कपडे से सजावट है एक सोफा रखा हुआ हैं व्हाइट कलर का यहाँ पर एक कैमरा रखा हुआ हैं ब्लॅक कलर का और सजावट बिलकुल बेहतरीन हैं। और--

यहा पर एक व्हाइट कलर का घर है जिस मे ब्लू कलर भी हो रहा है और इसमे बहोत सारी विंडो है।

इसमे येल्लो कलर का पेंट रखा है हॉल मे और यहा पर कुछ लोग है और एक इस्टेज है।

और कुछ काँच लगे है जीनमे कुछ लोग दिखाई दे रहे है और एक कैलेंडर टंगा हुआ है यहा पर --